यह चित्र एक खुले मैदान का है इस मैदान में कुछ लाल हरे वेह रंग बिरंगी मेट बिछे हुए है।

यह चित्र एक इमारत का है यह चित्र शाम के समय का है इमारत के पास कुछ हरे रंग के पेड़ लगे हुए नजर आ रहे है ईमारत के पास--

यह चित्र एक खुले मैदान का है इस मैदान में कुछ हरी व कुछ सुखी भूरी घास लगी हुई नजर आ रही है मैदान--

यह एक कार्यकालय कमरे का चित्र है इस चित्र में काले व सिल्वर रंग की कुछ कुर्सियां बैठने के लिए नजर आ रही है।

वह इस चित्र में बिल्डिंग का रंग पीला वे गुलाबी नजर आ रहा है बिल्डिंग के पास ही कुछ हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे है।

यह चित्र एक समुन्द्र किनारे का है इस चित्र में एक सफेद रंग का पानी का जहाज खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक खेल मैदान का है खेल मैदान हरे रंग का घास उग हुआ है वह खेल मैदान के चारों और बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है जहा पर कुछ लोग बैठे नजर आ रहे है।

वह आसमान का रंग आसमानी है वह सफेद है वह किसी मशीन से यहाँ पे काम किया जा रहा है।

यहाँ सामने की तरफ सफेद रंग का ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है वह दरवाजे पर पीला रंग हो रखा है।

यह चित्र एक धार्मिक स्थल का है इस चित्र में चार देवियों की वह एक गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है।

जिन्होंने पीले रंग की धोती पहने हुई है वे इस चित्र में पीछे की और का रंग लाल है।

यह चित्र एक फैक्ट्री का नजर आ रहा है फैक्ट्री का रंग नीले कलर का है वह यह बहुत बड़ा फैक्ट्री का चित्र है।

इस चित्र में हनुमान जी को लाल रंग का चोला चड़ाया हुआ है वह चित्र के आगे मुख्य द्वार पर ताला लगा है जिसका रंग मुख्य द्वार का लाल है।